यहाॅं पर की दीवार है उसके ऊपर नीले कलर की छत है। इधर यहाॅं बोहोत सारी सिनरी लगी हैं। यहाॅं पर कोकाकोला के फ्रीजर